टावर की पोले है और बहुत सारे घर है दिखाई दे रहे हैं।

एक बहुत ही बड़ा बिल्डिंग है या कोई सरकारी ऑफिस है यहां बहुत सारे आसपास में पहले दिखाई दे रहे हैं कुछ छोटे-छोटे पौधे भी है।

बहुत सारे जिम करने के सामाने रखी गई है कुछ आदमी बैठे है कुछ आदमी के हाथों में समाने भी दिखाई दे रहे हैं।